कूदेख प्रद देख कर प्रतीत हो रहा है कि ये एक ऑफिस है।

कुछ आदमी कुछ औरतें और बच्चे हैं ऊपर एक घर भी है बगल--

लगाई हुई है दो पंखे हैं जो बंद हैं एक गाड़ी लगाई हुई है।

उसके ऊपर लाल कलर की फूलों की माला चढ़ी हुई है बगल में एक छोटा सा पौधा है जिसमें हरे कलर का है।

एक पेड़ है वो बहोत सुखा हुआ है और इधर सारा कचरा पड़ा हुआ है।

यहां सब एक्सरसाइज कर रहे हैं एक सर हैं जो वाइट कलर की टी_शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहने हुए हैं व्हाइट कलर के शूज ।

बच्चे एक्सरसाइज कर रहे है पीछे दो लोग बैठे हुए है कुर्सी पर --

गेट दिख रहा है पीछे काले कलर का ऊपर लाइटिंग दिखाई दे रही है।

उधर एक चेयर लगी हुई है उसपर एक आदमी बैठा हुआ है वो अपना मोबाइल चला रहा--

बहोत सारे आदमी और औरत है बहोत सारी --

कोई किसी से पूछ रहा है कोई लाइन में लगा हुआ है और एक अलमारी है जिसमें --

तीन चार फैन हैं जिनपर समान रखा हुआ एक ब्ल्यू कलर का लगा हुआ है जिसपर हम देख सकते हैं कि हमें क्या चीज करना है क्या--

यह एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है जिसमें कुछ लोग खाना खा रहे है कुछ लोग --

कलर लगे हुए हैं कुछ चेयर खाली हैं इसमें जेंट्स लेडीज सभी लोग हैं ऊपर टिन लगी हुई है।

ब्लैक कलर का पतरा लगा हुआ है ब्लैक कलर की टीन लगी हुई है ऊपर एक खंभा लगा हुआ है।

उसमें एक डस्टबिन रखा हुआ है और एक आदमी लॉक खोल रहा है उधर एक --

पूल है इधर ग्रीन कलर का पूरा हरियाली हरियाली है एक झोपड़ी है उसमें आदमी है जो ये अपना गेट खोल रहा है आकाश दिखाई--

हरे हरे पत्ते हैं यहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं।

एक और घर हैं बाहर विंडो है तीन चार हट है।

आस पास पेड़ ही पेड़ है बहोत सुंदर नजरिया दिखाई दे रहा है चारों तरफ बहोत प्यारा लग रहा है।

पिंक कलर की हैं यहां कुछ व्हाइट कलर की हैं कुछ क्रीम कलर की हैं इधर एक तार है जो ऊपर से जा रहा है।

पड़ा हुआ है और राधा कृष्ण पीले कलर की टी शर्ट और नीले कलर की जींस पहनी हुई है।

यह स्लीपर पहनी हुई है पानी झड़ रहा है बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है हरे कलर के झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

वाह कितना सुंदर दृश्य है इधर बहोत सारी बिल्डिंग है बहोत ग्रीन एरिया है।

बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। बीच में--

यह एक जगह है शायद बैंक का लग रहा है बैंक का आस पास का सीन दिखाई दे रहा है।

जंप करेंगे दूसरे को उठाएंगे फिर तीसरे पे जंप करेंगे कुछ बच्चों ने पीले कलर कि टीशर्ट रेड कलर का पैंट पहन रखा है पजामा पहन रखा है ब्लैक कलर के शूज पहन रखे हैं।

कुछ ने व्हाइट कलर की टी शर्ट ब्लैक कलर का पेंट पहन रखा है उधर --

एक मैट लगा हुआ है ग्रीन कलर का ऊपर भी ग्रीन कलर के उधर पेड़ है नीचे किसी बॉटला र --

बाहर दो पौधे लगे हुए हैं प्लस का निशान लगा हुआ है अंदर--

और काफी सारी चीजे हैं अच्छी पर्याप्त मात्रा में सारी चीजे दिखाई दे रही हैं।

छोटी सेल बड़ी सेल दोनों तरह की सेल हैं और --

इसका ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर टूट चुका है और पास में एक वाइट कलर की बाल्टी रखी हुई है।

वाओ सो ब्यूटीफुल बगीचा यह कितना सुंदर लग रहा है इसमें तीन चार गमले हैं।

यहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है स्कूटी बाइक सबकी भीड़ लगी हुई है।

पास में एक बेकर्स की भी दुकान है एक आदमी खड़ा हुआ है।

दो चार आदमी साथ में खड़े हुए हैं कुछ लोग दूध ले रहे हैं कुछ लोग छाछ ले रहे हैं और --

ऊपर फैन है वाइट कलर का लाइटिंग लगी हुई है दवाईयों की दुकान है।

दोनों तरफ दवाइयां रखी हुई हैं एक काउंटर हैं।

उसके पास एक कुर्सी है लैपटॉप है सीढ़ियां है जिसपे चढ़ के ऊपर --

कुर्सियां खड़ी बैठी कुर्सियां हैं चेयर पर एक बैग रखा हुआ है और --

वाव कितना सुंदर गार्डन है बगीचा है इसमें।

कुछ क्रीम कलर के पेड़ है जिसमें हरी हरी पत्तियां हैं।

पुरानी बिल्डिंग लग रही है बंगले लग रहा है ऊपर लग रहा है यह आतंकी जैसे चार पांच आठ दस लोग खड़े हुए हैं।

और इधर एक पेड है ग्रीन कलर का उसपर बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है ऊपर बादल दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ की मिट्टी मिट्टी दिखाइए दे रही है ऊपर व्हील्स है ट्रैक्टर है ट्रक है ये सब।

बाहर एक डस्ट अह शीशा है शीशे के बाहर चार गैरेज लगे हुए हैं बाहर --

और ऑटो रिक्शा भी खड़े हुए है अंदर आने के बाद शर्माइका लगी हुई है चारों तरह लगभग शीशे दिखाई दे रहे हैं।